यहाँ ड्राई क्लीनर की शॉप है।

यहाँ बड़ा सा गार्डन है जो सजा हुआ है पर्दो से फूलो से--

तकिये रखे हैरजाई रखी है सामने सोफा है।

खड़ी है पेड़ है और ऑटो भी है जिसके अंदर सामान रख रहे है कुछ आदमी--

यहाँ मूर्ति बनी हुई है। हाथ में भी कुछ पकड़े है।

और आस पास रेलिंग बनी हुई है घाँसे है सामने लाइट लगी है पहाड़ पेड़ लगे है।

खंबे लगे है। तार जा रहे है। ऊपर आसमान है।

पेड़ और लगे है और अंकल खड़े है।

यहाँ रेस्टोरेंट है।

अम-आ चप्पले रखी है नीचे बाहर --

यहाँ सामने कुछ औरतें तशले में--

जिसमें ताला डला हुआ है।

ऊपर लाइटे है। आस-पास बड़ी-बड़ी मशीने है। और काउंटर बने है।

और दूर पहाड़ है ऊपर आसमान है निचे रोड है।

और कुछ दुकाने बंद है। आस-पास कार वेन खड़ी है। बाइके खड़ी है।

सामने गेट है। नीचे टाइल्स है।

और बैठने की जगह है चद्दर वाले संग लगे है।